और ये जरूरतमंद होते है यहाँ पे डस्टबिन रखे हुए हैं इतने सारे लोग हैं और यहाँ पीछे रूम भी बंद है।